मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात में फिर एक बार आप सबका स्वागत है
आज मन की बात की शुरुआत हम भारत की सफलता के ज़िक्र के साथ करेंगे
इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपनी एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है
ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की हजार साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा
ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी
लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को ये प्रतिमा वापस मिल गई है
ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेय्यर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी
हनुमान जी की ये मूर्ति भी 600700 साल पुरानी थी
इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई हमारे मिशन को मिल चुकी है
हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोनेकोने में एकसेबढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रहीं इसमें श्रद्धा भी थी सामर्थ्य भी था कौशल्य भी था और विवधताओं से भरा हुआ था और हमारे हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नज़र आता है
ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदहारण तो थीं हीं इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी
लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रहीं
कभी इस देश में तो कभी उस देश में ये मूर्तियां बेचीं जाती रहीं और उनके लिए वो तो सिर्फ कलाकृति थी
न उनको उसके इतिहास से लेना देना था श्रद्धा से लेना देना था
इन मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है
इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का आस्था का अंश है
इनका एक सांस्कृतिकऐतिहासिक महत्व भी है
इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए
और इसका कारण ये भी हुआ कि चोरी करने की जो प्रवृति थी उसमें भी एक भय पैदा हुआ
जिन देशों में ये मूर्तियां चोरी करके ले जाई गईं थीं अब उन्हें भी लगने लगा कि भारत के साथ रिश्तों में सॉफ्ट पॉवर का जो डिप्लोमैटिक चैनल होता है उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है
क्योंकि इसके साथ भारत की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं भारत की श्रद्धा जुड़ी हुई है और एक प्रकार से पियोपल टो पियोपल रिलेशन में भी ये बहुत ताकत पैदा करता है
अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा भी वापस लाई गई थी
ये भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिये का ही उदाहरण है
साल 2013 तक करीबकरीब 13 प्रतिमाएं भारत आयी थीं
लेकिन पिछले सात साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है
अमेरिका ब्रिटेन हॉलैंड फ्रांस कनाडा जर्मनी सिंगापुर ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है
मैं पिछले साल सितम्बर में जब अमेरिका गया था तो वहां मुझे काफी पुरानीपुरानी कई सारी प्रतिमाएँ और सांस्कृतिक महत्व की अनेक चीजें प्राप्त हुई
देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में श्रद्धा रखने वाले आर्कियोलॉजी में श्रद्धा रखने वाले आस्था और संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग और एक हिन्दुस्तानी के नाते हम सबको संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है
भारतीय संस्कृति और अपनी धरोहर की बात करते हुए मैं आज आपको मन की बात में दो लोगों से मिलवाना चाहता हूं
इन दिनों फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की दो भाईबहन किलि पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में हैं और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरुर सुना होगा
उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं
लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं
हाल ही में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था
कुछ दिन पहले उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाकर उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी
मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाईबहन किलि और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं
कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतीय दूतावास में इन्हें सम्मानित भी किया गया है
भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है
मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दुनिया के डेढ़ सौ से ज्यादा देशों के गायकोंसंगीतकारों ने अपनेअपने देश में अपनीअपनी वेशभूषा में पूज्य बापू का प्रिय महात्मा गाँधी का प्रिय भजन वैष्णव जन गाने का सफल प्रयोग किया था
आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75वाँ वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं
जहाँ विदेशी नागरिकों को वहाँ के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिये आमंत्रित करें
इतना ही नहीं अगर तंजानिया में किलि और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिप सिंक कर सकते हैं तो क्या मेरे देश में हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत हैं क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें कोई कन्नड़ बच्चे जम्मूकश्मीर के गीतों पर करें
एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारतश्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे
इतना ही नहीं हम आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से जरुर मना सकते हैं
मैं देश के नौजवानों से आह्वाहन करता हूँ आइए कि भारतीय भाषाओँ के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप
और देश की विविधताओं का नयी पीढ़ी को परिचय होगा
मेरे प्यारे देशवासियो
अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया
जो विद्वान लोग हैं वो मातृभाषा शब्द कहाँ से आया इसकी उत्त्पति कैसे हुई इसे लेकर बहुत एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं
मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूँगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है
माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं चिरंजीव बनाते हैं
जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते
मुझे बरसों पहले की एक बात याद है जब मुझे अमेरिका जाना हुआ तो अलगअलग परिवारों में जाने का मौका मिलता था कि एक बार मेरा एक तेलुगू परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला
उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं हैं तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठकर साथ में लेंगे और दूसरा डिनर की टेबल पर कंपल्सरी हर कोई तेलुगू भाषा में ही बोलेगा
जो बच्चे वहाँ पैदा हुए थे उनके लिए भी ये नियम था
अपनी मातृभाषा के प्रति ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था
आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वन्द में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा अपने पहनावे अपने खानपान को लेकर एक संकोच होता है जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है
हमारी मातृभाषा है हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए
और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती
हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं हजारों बोलियाँ एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रचीबसी हुई हैं भाषा अनेक भाव एक
सदियों से हमारी भाषाएँ एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करती रही है एक दूसरे का विकास कर रही हैं
भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है
उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है
भारत के लोग करीब 121 यानी हमें गर्व होगा 121 प्रकार की मातृ भाषाओं से जुड़े हुए हैं और इनमे 14 भाषाएँ तो ऐसी हैं जो एक करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं
यानी जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ अलगअलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं
साल 2019 में हिन्दी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रमांक पर थी
इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए
भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है
अपनी भाषा की विरासत को सहेजने का ऐसा ही काम सूरीनाम में सुरजन परोही जी कर रहे हैं
इस महीने की 2 तारीख को वो 84 वर्ष के हुए हैं
उनके पूर्वज भी बरसों पहले हज़ारों श्रमिकों के साथ रोजीरोटी के लिए सूरीनाम गए थे
सुरजन परोही जी हिन्दी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं वहां के राष्ट्रीय कवियों में उनका नाम लिया जाता है
यानी आज भी उनके दिल में हिन्दुस्तान धड़कता है उनके कार्यों में हिन्दुस्तानी मिट्टी की महक है
सूरीनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है
मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था
आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है
सर्व मराठी बंधु भगिनिना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
ये दिन मराठी कविराज विष्णु बामन शिरवाडकर जी श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है
आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है
कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कवितायेँ लिखी अनेकों नाटक लिखे मराठी साहित्य को नई ऊँचाई दी
हमारे यहाँ भाषा की अपनी खूबियाँ हैं मातृभाषा का अपना विज्ञान है
इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है
हमारे प्रोफेशनल कोर्सेस भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाएँ इसका प्रयास हो रहा है
आज़ादी के अमृत काल में इस प्रयासों को हम सब ने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिये ये स्वाभिमान का काम है
मैं चाहूँगा आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जानेँ और कुछनाकुछ लिखें
कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी
ये मुलाकात दिलचस्प तो थी ही लेकिन बहुत भावुक थी
हम बहुत अच्छे मित्र रहे तो खुलकर के काफी बातें भी कर लेते हैं
जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया
उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी
लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी करीबकरीब चली गई दिखाई देना ही बंद हो गया
अब आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी का क्या हाल हुआ होगा और एक पिता की स्थिति का भी हम अंदाज लगा सकते हैं उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं
उन्होंने दुनियाभर के अस्पतालों में कोई भी दुनिया का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा कि जहाँ उन्होंने बेटी के इलाज के लिए भरपूर कोशिश न की हो
दुनिया के बड़ेबड़े देश छान मारे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और एक प्रकार से सारी आशायें छोड़ दी पूरे घर में एक निराशा का वातावरण बन गया
इतने में किसी ने उनको भारत में आयुर्वेद के इलाज़ के लिए आने के लिए सुझाव दिया और वो बहुत कुछ कर चुके थे थक भी चुके थे फिर भी उनको लगा कि चलो भई एक बार ट्राय करें क्या होता है वे भारत आये केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया
काफी समय बेटी यहाँ रही
आयुर्वेद के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई
आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोजमेरी के जीवन में आई
लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी नई जिंदगी आ गई और ओडिंगा जी इतने भावुक हो करके ये बात मुझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत के आयुर्वेद का ज्ञान है विज्ञान है वो केन्या में ले जाए
जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाभ अधिक लोगों को मिले इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे
मेरे लिए ये बहुत खशी की बात है कि हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ
ये सुन करके आपको भी खुशी होगी
कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्व ना हो हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं
ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक हैं
जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है वो आयुर्वेद का जिक्र जरूर करते हैं
उन्हें भारत के कई आयुर्वेदिक संस्थाओं की जानकारी भी है
पिछले सात वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचारप्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है
आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं
इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था
इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है
इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चैलेंज में जरुर हिस्सा लें
एक बार जब लोग मिलकर के कुछ करने की ठान लें तो वो अद्भुत चीजें कर जाते हैं
समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जनभागीदारी सामूहिक प्रयास इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है
मिशन जल थल नाम का ऐसा ही एक जनआंदोलन कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है
यह श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफसफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अनोखा प्रयास है
मिशन जल थल का फोकस कुशल सार और गिल सार पर है
जनभागीदारी के साथसाथ इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत मदद ली जा रही है
कहांकहां अतिक्रमण हुआ है कहां अवैध निर्माण हुआ है इसका पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का बाकायदा सर्वे कराया गया
इसके साथ ही प्लास्टिक वास्ते को हटाने और कचरे की सफाई का अभियान भी चलाया गया
मिशन के दूसरे चरण में पुराने वाटर चैनल्स और झील को भरने वाले 19 झरनों को रिस्टोर करने का भी भरपूर प्रयास किया गया
इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैले इसके लिए स्थानीय लोगों और युवाओं को वाटर एम्बैसेडर्स भी बनाया गया
अब यहां के स्थानीय लोग गिल सार लेक में प्रवासी पक्षियों और मछलियों की संख्या बढ़ती रहे इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसको देखकर खुश भी होते हैं
मैं इस शानदार प्रयास के लिए श्रीनगर के लोगों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
आठ साल पहले देश ने जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया समय के साथ उसका विस्तार भी बढ़ता गया नएनए इनोवेशन भी जुड़ते गए
भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे तो पाएंगे कि हर तरफ स्वछता के लिए कोई न कोई प्रयास जरुर हो रहा है
असम के कोकराझार में ऐसे ही एक प्रयास के बारे में मुझे पता चला है
यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स के एक समूह ने स्वच्छ और हरित कोकराझार मिशन के तहत बहुत प्रशंसनीय पहल की है
इन सबने नए फ्लाइओवर क्षेत्र में तीन किलोमीटर लम्बी सड़क की सफाई कर स्वच्छता का प्रेरक सन्देश दिया
इसी प्रकार विशाखापट्नम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पॉलीथीन के बजाए कपड़े के थैलों को बढ़ावा दिया जा रहा है
यहाँ के लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सिंगल उसे प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं
इसके साथ ही साथ ये लोग घर पर ही कचरे को अलग करने के लिए जागरूकता भी फैला रहे हैं
मुंबई के सोमैया कॉलेज के स्टूडेंट्स ने स्वछता के अपने अभियान में सुन्दरता को भी शामिल कर लिया है
इन्होंने कल्याण रेलवे स्टेशन की दीवारों को सुन्दर पेंटिंग्स से सजाया है
राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है
यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है
जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है
सबका प्रयास की यही भावना देश में जनभागीदारी को मजबूत करती है और जब जनभागीदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
आज से कुछ दिन बाद ही 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल womenएस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा
महिलाओं के साहस कौशल और प्रतिभा से जुड़े कितने ही उदाहरण हम मन की बात में लगातार साझा करते रहे हैं
आज चाहे स्किल इंडिया हो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटे बड़े उद्योग हो महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला हुआ है
आप किसी भी क्षेत्र में देखिए महिलायें पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं
आज हमारे देश में पार्लामेंट से लेकर पंचायत तक अलगअलग कार्यक्षेत्र में महिलायें नई ऊँचाई प्राप्त कर रही हैं
सेना में भी बेटियाँ अब नई और बड़ी भूमिकाओं में ज़िम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं
पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियाँ उड़ा रही हैं
देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियाँ सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं
इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए
इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलायें निदेशक की भूमिका में हैं
पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं
बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है
इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है
आप देश में एक और बढ़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है
स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है
इसमें हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हमारी बेटियाँ बीच में स्कूल न छोड़ दें
इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है
ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है
जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है देश में तीन तलाक के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी आई है
ये इतने सारे बदलाव इतने कम समय में कैसे हो रहे हैं ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलायें कर रहीं हैं
मेरे प्यारे देशवासियों
कल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है
ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए भी जाना जाता है
मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वैज्ञानिकों को आदरपूर्वक श्रद्दांजलि देता हूँ जिन्होंने हमारी साइंटिफिक जर्नी को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है
साथियो हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नोलॉजी ने काफी जगह बना ली है
कौनसी टेक्नोलॉजी अच्छी है किस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल क्या है इन सभी विषयों से हम भलीभांति परिचित होते ही हैं
लेकिन ये भी सही है कि अपने परिवार के बच्चों को उस टेक्नोलॉजी का आधार क्या है उसके पीछे की साइंस क्या है इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है
इस साइंस डे पर मेरा सभी परिवारों से आग्रह है कि वो अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए जरुर छोटेछोटे प्रयासों से शुरू कर सकते हैं अब जैसे दिखता नहीं है चश्मा लगाने के बाद साफ़ दिखने लगता है तो बच्चों को आसानी से समझाया सकता है कि इसके पीछे विज्ञान क्या है
सिर्फ चश्मे देखें आनंद करें इतना नहीं
अभी आराम से आप एक छोटे से कागज़ पर उसे बता सकते हैं
अब वो मोबाइल फोन उपयोग करता है कैल्कुलेटर कैसे काम करता है रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है सेंसर क्या होते हैं ये साइंटिफिक बातें इसके साथसाथ घर में चर्चा में होती है क्या हो सकती है बड़े आराम से हम इन चीज़ों को घर की रोजमर्रा की ज़िन्दगी के पीछे क्या साइंस की वो कौन सी बात है जो ये कर रही है इसको समझा सकते हैं
उसी प्रकार से क्या कभी हमने बच्चों को लेकर के भी आसमान में एक साथ देखा है क्या रात में तारों के बारे में भी जरुर बातें हुई हों
विभिन्न तरह के कॉन्स्टेलेशंस दिखाई देते हैं उनके बारे में बताएं
ऐसा करके आप बच्चों में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रति नया रुझान पैदा कर सकते हैं
आज कल तो बहुत सारी एप्स भी हैं जिससे आप तारों और ग्रहों को लोकेट कर सकते है या जो तारा आसमान में दिख रहा है उसको पहचान सकते हैं उसके बारे में जान भी सकते हैं
मैं अपने स्टार्टअप्स को भी कहूँगा कि आप अपने कौशल और साइंटिफिक कैरेक्टर का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में भी करें
ये देश के प्रति हमारी कलेक्टिव साइंटिफिक रिस्पांसिबिलिटी भी है
जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टार्टअप्स वर्चुअल रियालिटी की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
वर्चुअल क्लासेस के इस दौर में ऐसे ही एक वर्चुअल लैब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती है
हम वर्चुअल रियालिटी के द्वारा बच्चों को घर में बैठे केमिस्ट्री की लैब का अनुभव भी करा सकते हैं
अपने शिक्षकों और अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थियों एवं बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके साथ मिलजुल कर सवालों का सही जवाब तलाशें
आज मैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की भी सराहना करना चाहूँगा
उनके कड़े परिश्रम की वजह से ही मादे इन इंडिया वैक्सीन का निर्माण संभव हो पाया जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मदद मिली है
साइंस का मानवता के लिए यही तो उपहार है
मेरे प्यारे देशवासियो
इस बार भी हमने अनेक विषयों पर चर्चा की
आने वाले मार्च के महीने में अनेक पर्वत्योहार आ रहे हैं शिवरात्रि है और अब कुछ दिन बाद आप सब होली की तैयारी में जुट जाएंगे
होली हमें एक सूत्र में पिरोने वाला त्योहार है
इसमें अपनेपराए द्वेषविद्वेष छोटेबड़े सारे भेद मिट जाते हैं
इसलिए कहते है होली के रंगों से भी ज्यादा गाढ़ा रंग होली के प्रेम और सौहार्द का होता है
होली में गुजिया के साथसाथ रिश्तों की भी अनूठी मिठास होती है
इन रिश्तों को हमें और मजबूत करना है और रिश्ते सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी जो आपके एक वृहद् परिवार का हिस्सा है
इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी आपको याद रखना है
ये तरीका है वोकल फोर लोकल के साथ त्योहार मनाने का
आप त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदी करें जिससे आपके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी रंग भरे रंग रहे उमंग रहे
हमारा देश जितनी सफलता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है उससे त्योहारों में जोश भी कई गुना हो गया है
इसी जोश के साथ हमें अपने त्योहार मनाने हैं और साथ ही अपनी सावधानी भी बनाए रखनी है
मैं आप सभी को आने वाले पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ
मुझे हमेशा आपकी बातों का आपके पत्रों का आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा
बहुत बहुत धन्यवाद